और संदूक के अन्दर नीले बैकग्राउंड हैं।

सामने हमे कृष्ण और राधा मैया की मूर्ति दिखाई दे रही है औ उनके निचे एक मयूर भी बैठा हुआ है|